यहां पर जगह-जगह पर घास जमे हुए हैं एक बगल में पेड़ दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहे हैं और ये बहुत पुराना फोटो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है पेड़ भी हरे ढंग से नहीं दिख रहे हैं।

कूरे टांगा हुआ है और मनपसंद जल पान लिखा हुआ है और यहाँ पे तीन टूल दिख रहा है झाडू दिख रहा है।

ये कार दिख रही है जो रोड पे खड़ा है और इसके दो चक्के दिख रहे हैं और दो विंडो दिख रहे हैं व्हाइट कलर का और उसके जस्ट सामने पार्क दिख रहा है पार्क में बहुत सारे--